ये फोटो खाना का लगा हुआ है।

देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। एक गुफा जैसा बनाया गया है।